कुछ बांदा खड़ी है तीनों बांदा खड़ी हैं एक बंदा ए_टी_एम में कुछ काम कर रहा--

यहां पे बहुत सारे टायर रखा हुआ है एक बड़ा रैंक है।

ये एक फ्लोर दिखाई दे रहा है बड़ा सा बिल्डिंग के अंद--

यहां पे डी_जे का महल दिखाई दे रहा है जिसका नाम है डी_जे सेम--

जो बिल्डिंग के बाहर लाइट देके मनीचर लाइट देके सजा हुआ है।

लाइट देके सजा हुआ है कुछ आदमी लोग यहां पे खड़ा है औरत भी है बच्चे लोग भी है।

ये एक शॉप है जो टायर बिकने का शॉप है जहां पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप का गाड़ी का टायर मिलता है।

बहुत सारे दुकान लाइन देके लगा हुआ है यहां पे बहुत कस्टमर घूम रहा है रास्ते में।

यहां पे एक बड़ा सा बधा हुआ रोड दिखाई दे रहा है पक्का --

यहां पे प्लेटफार्म बना हुआ है '--

उसके पास में कुछ का है वो वाइट कलर का एंड पर्पल कलर का दे के बांधा हुआ है।

उसके पास में भी एक बिल्डिंग रेड कलर का दिखाई दे रहा है वो किसी दुकान का है उसके पास एक येलो कलर का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है --

ये पूरा सिल्क हाउस है जहां पे सिल्क का साड़ी लहंगा --

यहां पे पास में एक दुकान बंद हुआ है और आज भी छिलका है।

यहां पे डॉग का वो सर्जरी पेट का--

ये एक रास्ते के पास एक दुकान है बड़ा सा दुकान--

बस में एक ट्रेन में बहुत सारे ला रेड कलर का प्लास्टिक का सीएट रखा हुआ है।

इस तरफ दूसरा तरफ दो चेयर है ब्लैक कलर का इस साइड में एक सोफा है उस साइड में --

पैकेट में बहोत सारे मिठाई रखा हुआ है नीचे--

ये नीचे से ऊपर जा रहा है उसके पास उधर उस तरफ--